साल्की दिख रहा है बहुत सारे साल्की है साल्की में सीट लगा हुआ है इसमें स्टैंड लगा हुआ है उम्म ट्यूब है ब्लैक कलर का है।

और यहाँ पर साइड में लाइट - उट नहीं बर रहा है अम्म रूम के कलर वाइट कलर से पेंट है केमाड़ी लगा हुआ है एगो में के केमाड़ी खुला हुआ है एगो में केमाड़ी बंद है।

कर रहा है लड़का सावधान में खड़ा है।

यहां पर फार्चून का दुकान है यहां पे ऊन बिका रहा है चूड़ी बिका रहा है एक प्रिंटेड करने वाला मशीन दिख रहा है।

ब बेग है झोरा दिख रहा है अंकल जी खैनी लगाते हुए दिख रहा है।